खुले आसमान भी दिखाई दे रहे ब्लू कलर में और यहां एक इंडिया का झंडा दिखाई दे रहे।

में एक घर दिखाई दे रहा है टीना के घर और बा बागान दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

यहां छोटे पिलर भी दिखाई दे है ऐरो से बनाया हुआ।

तस्वीर में लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में वाइट कलर में जलते हुए।

यह एक बड़ा सा पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है।

यहां बगल में एक टीना के शेड भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में क्यू_आर कोड भी दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के पास एक चर्च भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में।

ये तस्वीर में एक गेरेज दिखा दे रहा है गेरेज मे बहोत सारा कार दिखाई दे रहा है कार जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के कार दिखाई दे रहा है।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

और बगर में यहा एक शॉप दिखाई दे रहा है शॉप पे बहुत सारा बाल्टियां बीकते हुए दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का छत जो टीना से बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

वॉल के कलर्स में वाइट में पेंट करके दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारा बोतल भी दिखाई दे रहा है और यहां बहुत सारा ग्लासेस दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक प्लास्टिक में टांगते हुए पानी दिखाई दे रहे है।

बगल में यह बिजली के खंभा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक फैन भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में।

यह तस्वीर में चर्च के अंदर दिखाई दे रहे और यहां बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहे--

इंसानों का फेस ढक के दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में खुले हुए आसमान दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर में।

और दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में और ये तस्वीर में फैन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में।

चेल्लई में बहुत सारा लाइट बफ़ जलते हुए दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

ये तस्वीर में टिड्डियां भी दिखाई दे रहा है।

मुझेे ये तस्वीर में दो लोग दिखाई दे रहा है। ई लोग लोग के चेहरा ढाक के दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एमवे लिख के बैनर भी दिखाई दे रहा है और यहां मुझे दो ए_सी के फैन भी दिखाई दे रहा है।